अ एक घर दिखाया गया है जिसपे लगे हुए है अँड ये ईट का बना हुआ है ऊपर हमे स्काय जिसमे व्हाइट कलर नज़र आ रहा है।

इस इमेज में हमे यहाँ पे एक गार्डन नजर आ रहा है इस गार्डन में छोटे छोटे प्लांट्स लगे हुए है कुछ हरी हरी दुर्वाये भी लगी हुई है।

हम्म्म घास वगैरे भी नजर आ रही है अ यहाँ पे कुछ लाइट्स वाले खम्बे लगे हुए है एंड स्काय नज़र आ रहा है।

यह पे कुछ ट्रीज़ दिखाई गए है जैसे की बड़े बड़े ट्रीज़ हे एण्ड स्काइ दिखया गया है जिसमे हमे व्हाइट कलर दिखाया गया है।

केज मे हमे एक बंदर नजर आ रहा है ये यहाँ पे फ्रूट्स खा रहा है इस के हाथ मे कुछ रेड कलर का फ्रूट है यहाँ पे केले पड़े हुए है।

जो ब्लू कलर के ऑरेंज कलर के एण्ड व्हाइट कलर के है और यह पे कुछ पेड़ पौधे है भी नजर आ रहे है।

ग्रीन कलर के है एण्ड स्काइ नजर आ रहा है जिसमे स्काइब्लू कलर नजर आ रहा है एण्ड हमे यहाँ पे कुछ कुर्सिया टेबल वैगेरा नजर आ रहे है।